ये आइस क्रीम का फोटो है।

बहुत सारा फूल से सजावट किया हुआ है।

मछली के दुकान पे लोग मछली खरीदने जाता है इसमें बहुत सारा अलग-अलग मछली रखा हुआ है।

देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इस दुकान में खेल-कूद से संबंधित सामग्री मिलती है।

इसमें कुछ बेडमिन्टन के रैकेट रखे हुए हैं कुछ फुटबॉल रखे हुए हैं बहुत सारे जूते रखे हुए हैं।

यह गुफा के अन्दर से लोग निकलते दिखाई दे रहे है कुछ लोग निकल चुके है और कुछ लोग गुफा के अन्दर ही है गुफा के अन्दर एक महिला भी दिखाई दे रही है जिसने पीले रंग के साड़ी पहनी है।

यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्री गेट का फोटो है।

उसपे लिखा है ट्वेल्व कॉमर्स यानी की ये बारहवीं कक्षा की क्लास है और ये कॉमर्स की क्लास है ।